काफी अच्छा ईमेज है। ये एक क्लास का ईमेज है। बच्चे अपने पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं बच्चे नीले और लाल कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

सामने क्लासेज बनी हुई हैं वॉल अ चैनल गेट को नीले कलर से पेंट किया गया है।

लकड़ी के पट्टे बने हुए हैं बगल में पीछे पेड़ लगे हुए हैं सूर्य लाइट लगी हुई है।

योगा रूम का ईमेज है। ये एक बड़ा हॉल है। हॉल में मैट बिछी हुई हैं। बच्चे योगा कर रहे हैं सामने कांच लगा हुआ है।

--तेज है स्टेज पर बहुत सारे लोग फ्लावर डेकोरेट कर रहे हैं स्टेज को चारों तरफ से डेकोरेट किया गया है जिन बनाया गया है येलो कलर की पर्दे लगाए गए हैं ऑरेंज कलर की पर्दे लगी हुई हैं।

सामने शटर लगी हुई है टेबल रखी हैं कुर्सी रखी हैं बच्चे जमीन पर बैठे हैं।

गाड़ी से सामने बैंक है काफी बाहर--

ये समने स्टेशनरी की शॉप है उसके फ्रन्ट का है एक एल.इ.डी. बल्ब लगा हुआ है।

सामने एक बड़ा हॉल है हॉल मे बहुत सारी चिल्ड्रेंस बैठे हुए है।

सामने डांस करने वाली लड़की का इमेज है रेड और ग्रीन की वह ड्रेस पहने हुए हैं उसके जस्ट पीछे नीले कलर की वॉल है वॉल पे काफी सारे बैलूंस लगे हुए हैं।

बड़ी गैलरी है गैलरी में बहुत सारे चिल्ड्रन्स बैठे हुए हैं बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कई सारे कपड़े पहने हुए हैं मैम उन्हें ऑब्जर्व कर रही है गेट लगा अच्छा बड़ा।

गाइस ये एक बड़ा हॉल है हॉल में हॉल की छतों पे काफी सारे बल्ब लगे हुए है अलग-अलग कलर के येलो ब्लैक रेड कलर के बैलून लगे हुए है बहुत सरे लोग खड़े हुए है काई सारी मशीनें रखी हुई है कुर्सी रखी हुई है।

फब्बारे का कलर नीला है। भईया येलो और नीले कलर का जींस पहने हुए हैं। नीचे मैटी है।

यह सामने पानी की टंकी है चारो तरफ टाइल्स से ए-ए-एरिया बना हुआ है।